इस इमेज में हमें सामने ही दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

और टाइल्स का रंग लाल और सिल्वर कलर का है।

सामने ही हमें एक क्लॉक टावर दिख रहा है जिस पर एल_इ_डी लाइट्स की सजावट की गयी है।

जो कि पीले रंग का है और उसके बगल में संतरे रंग का भी एक डब्बा है।

और उसके पीछे हम पेड़ों का समूह देख सकते है जो की अलग अलग आकार के हैं।

पीछे की तरफ हमें तीन और लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

इन पेड़ों के आसपास छोटे छोटे पौधों की मदद से बाउंड्री की गई है।